यह मां विष्णु प्रिया स्टोर है मां विष्णु प्रिया स्टोर में हर तरीके का सामान मिलता है यहां पे एक लड़का खड़ा है और दो लड़के सीढ़ियों के --

और यहां पे सामान मिल रहा है पास में एक मां विष्णु जी की दूसरी शॉप भी है जहां पे बीकाजी भुजिया और --

यहां पर छोटे टेडी बेयर बड़े टेडी बियर रखे हुए हैं यह गिफ्ट के शॉप है यहां पे चांद सितारे --

यहां पे एक के सर ग्रीन वाइट कलर के गुब्बारे भी अलग अलग झुंड में लगे हुए हैं।

और इसलिए टेप चक्री से कुछ चिपका रही है।

लेके जाते हैं यहां पे रसगुल्ले भी मिलते हैं यहां बहोत भीड़ होती है।

मैच खेल रहे है यहां पे पेड़ पौधे भी लगे हुए है हरियाली है और कॉलेज भी --

ये सारे कोई कतार में खड़े हैं यहां पे बहुत भीड़ है तीन चार लड़कियां दो तीन आदमी हैं।

और अंदर भी ए_सी लगी हुई है और यहां अंदर भी बहोत सारे लोग है जो ए_टी_एम से पैसे निकाल रहे हैं।

गुलाब गेंदे की और प्लास्टिक के फूलों की यहां पे फुलर बर्थडे पे लगाने के लिए फुलहरियां भी लगी हुई हैं।

यह एक गिफ्ट की शॉप है यहां पे छोटे बड़े हर तरीके के गिफ्ट है यहां पे कप भी रखे हुए हैं टेडी भी है।

सिंदरी ओढ़के रखी हुई हैं यहाँ पे फोटो भी रखी हुई हैं और पास वाले गिफ्ट पार्टनर को देने के लिए रखे हुए हैं।

यह एक सड़क है जहां से बहुत सारे बाइक का आना जाना--

यहां पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है यहां पे मकान बनाए जा रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है।

यहां पे गाजर लोया भिंडी पत्ता गोभी फूल गोभी और केले पपीते अनार चीकू भी रखे हुए हैं।

ब्राउन कलर की बाल्टी रखी हुई है ग्रीन कलर का कैंपर रखा हुआ है पास में बहुत सारी टेबल रखी हुई है।